गेट नजर आ रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं। सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए और जो दीवार है वो ग्रीन कलर की है पाम ट्रीय दिखाई दे रहा है एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसकी भी दीवार ग्रीन कलर की है।

यहाँ पर महिलाएँ जो हैं स्क्रीन दिख रही है जो एक फॉक कल्चर का जो है वो उन्होंने पहनावा दिखाया है और पीछे में जो --

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो वाइट और ब्लैक कलर की है उसके विंडोज नज़र आ रहे है जो कांच के दिख रहे है। लाइट्स लगे हुई है और वहा पर दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक भैंस दिख रही है जो यहाँ पर दो लोग दिख रहे हैं दरवाजा वहाँ पर नजर आ रहा है।